चित्र में छोटी -छोटी प्यारी -प्यारी मंदिर दिखाई दे रहे है। उसके सामने एक बड़ी मंदिर भी है और अभी ये शाम का द्रिश्य है जो की काफी आकर्षक लग रहा है।

यह मुस्लिम का मकान नजर आ रहा है जिसमे ग्रीन टाइगर विन का --

जो की शादी का घराना ही है और लगता है शादी हो गयी है।

यह चित्र किसी कार्यालय का लग रहा है।